और बहुत सारे लोग है।

इस पोस्टर में लिखा है पेंटर ।

पर दिखाया जा रहा है एक रोड है।

और देखा जा रहा है पुलिस भी है।

बैठने के लिए चेयर है।

और दिखाए जा रहा है मछली भी बचने के लिए लेके आया है।

उस के अंदर बहोत सारे लोग हैं।

और देखा जा रहा है दो गाड़ी--

यहां पर दिखाई जा रहा है एक मार्केट है।

दिखाया जा रहा है गोल्डन कलर का है बुद्धा का स्टेच्यू है।

यहाँ पर दिखाया जा रहा है एक मन्दिर है।

और देखा जा रहा है एक लड़की है और दो लड़का है।

ठीक उसी के सामने चार बिल्डिंग हैं और--

यहां पर एक खिड़की है।

लाल पिलर है और चार दरवाजा है।

घर या कुछ है बहुत सुंदर है जगह।